और बहुत लाइट जैसी जल रही है रेड में है।

एक लड़की को कुछ करवा रहा है सीढ़ियों पे --

और टॉवल का हंस जैसा बनाने की कोशिश की गई हैं।

और ब्राउन कलर का टेबल है जिसके साथ--

दो तीन लेडिस खड़ी हैं साड़ियां पहेन कर।

एक लड़की ने येलो जैसी फ्रॉक पेहनी हुई है।

एक ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं पुराने पत्थरों की--

और कुछ पेन जैसे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सामने पोस्टर लिखा हुआ है लगा हुआ है जिस पर लिखा है बैंक ऑफ़ बड़ौदा --